पार्किंग मे लगी हुई है | बिल्डिंग के साइड मे छोटे छोटे हरे हरे झाड दिख रहे हैं | दीवाल की बोउन्ड्री दिख रही है | राइट साइड बड़े बड़े मकान छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं ।

साइड वायरिंग दिख रही है एक छोटा सा लेंटर दिख रहा है जो अ-आसमानी कलर का है।

शॉप के जट सामने साइड में टू व्हीलर वाहन दिख रहा है जो कि खड़ा हुआ है वाहन में आइना दिख रहा है। एक रेड कलर का बोर्ड दिख रहा है।

कार रिपेयरिंग हो रही है यहाँ एक आदमी दिख रहा है की ब्लू कलर हाफ टी-शर्ट दिख रही है कार के सामने की डिक्की खुली हेगी।

एक बाइक दिख रही है जो कि खुली हुई है साइड में कुछ बोक्स दिख रहे हैं कार्टून दिख रहे हैं।

बड़ा सा मोर दिख रहा है आई साइड हरे-भरे बड़े-बड़े झाड़ दिख रहें हैं नीचे साइड सुखी घास दिख रही है मोर दिख रहा है।